मंदिर बा बहुत बड़ा है यहाँ पर उम्म गेट उट सब बनल है जे कि अच्छा लगय फेर सीढ़ियों बनल है अ यहाँ पर देखब करय हिये हम।